यह एक तीन मंजिला बिल्डिंग का फोटो दर्शाया गया है जिस बिल्डिंग के ऊपर आर_ए_सी_आई_टी का पोस्टर लगा हुआ है और तीसरी बिल्डिंग के ऊपर ए_सी भी लगी हुई है।

स्विमिंग पूल के अंदर भी पेड़ पौधे और हरियाली भी दिखाई दे रही है और स्विमिंग पूल के आगे ए--

सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो की एक कंप्यूटर के ऊपर कुछ स्क्रीन से लिख रहा है दूसरा व्यक्ति उसके पीछे बैठा हुआ है एक व्यक्ति इसके अंदर --

यह एक स्टेडियम का फोटो दिया दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारी हरियाली और लड़के--

और पास में कपड़े सुखाए हुए दिखाई दे रहे हैं और एक पास में--